गली में पेड़ भीं लगे हैं और घर भीं हैं व गली के साइड से नालियाँ भीं जा रहीं हैं और भीं बहुत कुछ नजारा हैं।

यहाँ पार देखने के लिए गली काफी साफ़ सुथरी है और क्लीन है छोटे छोटे पत्थर भी बिछ रखें है यहाँ पर--

जैसे की में यहाँ देख पा रही हूँ ये पोस्टर किसी सिनेमा हॉल का है यहाँ पटना का नाम लिखा है और ये किसी इंटरेस्ट अम्म्म --

इंट्रेस्टेड लोगों का है जो की--

एक लेडीस बैठी है अम्म गुनगठ में और एक आदमी खड़ा भी है जब--

पर इसके बगल वाला तो समज नही आरा फिलहाल --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

जैसे ये मैं यहाँ देख पा रही हूं ये एक पन्नियों कि दुकान हैं और ऊपर से फोटो लि क्लिक कियी गई हैं जिसमें रंग बिरंगी पन्नियां रख--

जैसे की में यहाँ देख पा रही हूँ हिल स्टेशन है यहाँ पर लोग गुमने आये हुए है और यहाँ के छत छतो हम्म के कलर कुछ --

बहोत सारे ज्यादा जने हैं बहोत ज्यादा भीड़ हो रखी है यहां पे देख--

ऑरेंज और वाइट कार का फ़ोन है ये तीन मंजिल है बिच में ग्राउंड है और इसमें--

पार्टिसिफेट भी है उतो उसमे जॉइन कर सकते है ।

जैसे मे यहां देख पा रही हूं ये एक बिल्डिंग है और इसमें काफी ज्यादा खिड़कियां है यहां अ पर उधर पार्किंग है जिसमें सारी बाइ--

और मौजूद है और यहां पर बैलून लग रहे हैं व्हाइट ऑरेंज ग्रीन कलर के और एक लड़का उस स्टेज --

पर खड़े होकर लेक्चर दे रहा है। जोर एक पेंटिंग भी है हमारे नेहरू जी की।

बहोत सारे लोग हैं और यहां साइड मे पीवीड भी हैं और रेलिंग भी लग रही हैं और यहां पर बाइके भी हैं और --

जैसे की में यहाँ देख पा रही हूँ ये एक डेम है और डेम इतना कम पानी है चल एक आदमी आपने बच्चे चार साल के बच्चे --

बच्चों को लेकर आया है जिससे उसके पैर ही केवल पैर ही भीग पा रहे हैं और ऊपर पूल भी नजर आ रहा है।

पूल में ऊपर आने वाल जाने वाले लोग भी नजर आ रहे है जोकि--

जैसे की में देख पा रही हूँ ये एक लकड़ी की फैक्ट्री है और यहाँ पर फर्नीचर का काम होता है तो यहाँ पर बोहोत ज्यादा लकड़ी है कोई --

जैसे ही में यहाँ पार देख पा रही हूँ यहाँ पार काफी सारे लोग है और पिलार रहे पिला रहे है और यहाँ पर लोग खाना --

पा रहे है ऐसा लाग रहा है यहाँ पर कोई पार्टी ओरगनाइस की है जिसका डिनर यहाँ पार खा रहे है लाइट टे भी जल रही है।

जैसे कि मैं यहां पे देख पा रही हूं ये एक सोने की कलाकृति है और यहां पर लोग इसमें इसके आगे झुक रहे हैं और मुझे लग--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

बड़ा मंदिर है दो लोग जा रहे है बात करते हुए सामने एक बड़ा सा घर है है और बिच रोड है ये यहाँ पर मंदिर के बा --

अपना खाना नहीं खा रही लेकिन दूसरी गाय का खाए जा रही है उसके मुंह में मुंह ही अड़ाए देती है दूसरी गाय--

जैसे की में यहाँ देख पा रही हुं ये एक डॉक्टर की दुकान है और उसके बगल में एक मेडिकल की दुकान है और ऊपर डॉक्टर क सुभेन्द्रू पन--

का आ ना वोर्ड भी लगा हु है यहाँ मेडिकल का बोर्ड भी लगा हुआ है और अंदर डॉक्टर की दूकान में एक अ पेशेंट --

पेशेंट बेठा हुआ है और मेडिकल कि दुकान में एक लेडिस दवाई लेरी है ।

बोर्ड भी लगा हुआ है और उधर कोने में तो कॉपी कबाड़ा कुछ और भरा हुआ है।

जैसे की में यहाँ देख पा रही हूँ ये एक जिम है और यहाँ पार सारी ही मशीने दौड़ ने वाली है जिस पे लोग खाड़े हो कर भागते है ।